ये एक मंदिर है जहां पे--

टीवीयां मिलती हैं और अलग अलग प्रकार की ब्रांड बनती हैं।

और ऊपर कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और इधर एक कुछ मल्लब टेंट बना हुआ है टेंट के अंदर गुलदस्ते पड़े हैं।

शायद ये लकड़ी का बना हुआ है।

ऊपर मटकिया भी पड़ी है और घंटी भी लगी हुई हैं और पौधे के ऊपर एक--

ये एक होटल का रूम है और इसका दरवाजा--